एं एक गार्डन बना हुआ है एं बाउंड्री तारे लगे हुए है बहुत सारी बिल्डिंगे बनी हुई है।

हम्म लकड़ियाँ रखी हुई हैं यहाँ पेड़-पौधे लगे हुए हैं खम्बा लगा हुआ है।

हें मंदिर बना पे पेड़ ह अ-अ-अ पेड़ उधर लगे हुए हैं।

के वे सब बेठे हुए हैं पेड़-पौधे हैं लगे हुए हैं बॉक्स रखे हुए हैं।